यूको बैंक है ऊपर इसका ये-येलो कलर का बोर्ड लगे हुए है यहां पर चार एक यहां दो गाड़ी है खड़ी हुई है और ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है व्हाइट कलर की उसमें यूको बैंक बना है ब्राउन कलर का उसका शटर है यहां लाइट लगी है लाइट के तार लगे --

बहुत बड़ा चर्च है जो फ्रोज़ी कलर का और रेड कलर का बना हुआ है जिसके ऊपर चर्च का निशान भी बना हुआ है और यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ लगा है जाली लगी है खिड़की लगी है और दिन का टाइम है।

सारे लाइटें डेकोरेटिव बोहत सारे लोग चेयरों पर बैठे हैं।

बहुत बड़ी फैक्ट्री टाइप बनी हुई है पूरी वाइट कलर की है अदर बहुत सारी गाड़ी भी खड़ी है। और यहाँ पर फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है और उसके साइड में बड़े -बड़े

एक तरफ बिल्डिंग है येलो कलर की पिंक कलर की बिल्डिंग बनी है ।